यहा पर एक कमरा दिखाई दे रहा है जिस पर एक बोर्ड लग रहा है वह हरे रंग का है पीछे एक वाइट बोर्ड लगा हुआ है गुब्बारे लगे हुए है गुब्बारे ब्राउन पिंक येलो कलर के ऊपर टीन शेड दिखाई दे रहा है नीचे का फर्श दिखाई दे रहा है जहा पर बेंच लगी हुई है कुर्सी पड़ी है कुछ सफ़ेद रंग की है।

ऊपर फर्श दिखाई दे रहा है जहा पर बसे दिखाई दे रही है बस लाल रंग की इनकी खिडकीया दिखाई दे रही है लोग नीचे सड़क पर दिखाई दे रहे है सामने की तरफ वॅन दिखाई दे रही है जोकि नीले रंग की है सामने की तरफ--

रंग पुरा हुया है पीचे हेर हेर घास दिखाई दे रहे है झडिया दिखाई दे रही है एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसपे भी नारंगी कलर का पेंट हो रखा है पीचे पेदोंकी पट्टीया दिखाई दे रही है उपर पाणी का टँक --

जिससे बिजली के तार बनते हुए है पीछे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे है बोर्ड दिखाई दे रहा है जो की नीले रंग का है टीशर्ट दिखाई दे रहा है जीसपर पीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है।